अ इंडियन टीवीएस नाम से उसका नेम प्लेट है उसका कलर रर व्हाइट अअ और ब्लू कलर में वो नेम प्लेट है।

फोटो में एक कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग दिख रही है।

नीचे जेंट्स किड्स एंड लेडीज करके लिखा हुआ है।

यहां पे बैठने के लिए भी बहुत सीट्स है बड़े लोग भी यहां पर आकर बैठे हैं।

और नीचे उसे गेट के ऊपर एक वाघ और एक घोड़े का चित्र --

फोटो में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग चंद्रपुर शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय चंद्रपुर ऐसे करके बड़ा सा एंट्री गेट है यह ऐ इंजीनियरिंग कॉलेज है।